नीला पानी है एक आदमी देख रहा--

एकदम मुझे पसन्द आया अच्छा डेकोरेशन लगा है जो कि एकदम--

इसमें बहुत सारे सामान हैं कॉपी हैं बुक्स हैं जोकि बहोत अच्छे-अच्छे कलर के हैं ब्रांडेड हैं।

लाइटें हैं व्हाइट कलर की जो की बे कब सुकुर सुखुरत हैं।